और व्हाइट कलर की लाइटे लगी हुई है ऊपर की जो टाइल्स है छत की वो सफेद कलर की लगी हुई है।

यह एक मंदिर है मंदिर जो की सफेद कलर से पेंट है और इसका दरवाजा पीले कलर का है।

और उसके ऊपर हरे कलर के पत्ते लगे हुए हैं और लाइटे पीले कलर की लगी हुई है और यहां पर एक पंख लगा हुआ है वॉल पे यहां पर एक चेयर रखी हुई है।

यह एक जंगल की तरह दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे पेड़ हैं कई पेड़ों पर पत्ते हैं और कई पेड़ों पर पत्ते नहीं है यहां पर कुछ छोटे पेड़ भी हैं और घासें भी हैं।

यह एक सफेद कलर की गाड़ी है गाड़ी का इंजन खुला हुआ है जो कि काले कलर का है।